ऐसे पुतला बड़ी-बड़ी दुकानो में रखत है।

लेना पे काफी अच्छा लग रहा होगा देखे में पेड़ पौधा सब हैं।